यह देखने मे काफी सुन्दर है इसके चारों ओर --

यह बहुत पुराना कुटिया है इसके चारों ओर डिजाइन किया गया है।

नीचे बेडशीट बिछाया गया है ये देखने मे काफी सुन्दर है ।

ये आगे की ओर झरने लगे हुए हैं।

यहाँ सभी चीज उपस्थित है यहाँ बहुत सारे लोग --

यह बहुत बड़ा इस स्टेशन है। इसके चारो और पौधे लगे हुए है।